इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा यह कुछ हॉस्पिटल जैसा हमें दिख रहा है जिसका नाम है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी रेडिएशन यहां बहुत सारे कांच दिख रहे हैं।

और ऊपर की ओर भी कुछ लाल रंग का पैकेट में लगा हुआ है।

इस चित्र में आप देख सकते हो यह एक ऑफिस संचालक जैसा दिख रहा है।

चित्र में आप देख सकते हो कि यहां एक फंक्शन एरिया जैसा दिख रहा है जहां बहोत सारे कुछ सजावटो की समान लगाए गए है।

के बाहर दरवाजा है जो बंद नजर आ रहा है।

इस चित्र में आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यह एक खुला सा मैदान जैसा है जिसमें किसी कितने लोगों की परछाई दिख रही है कुछ टेंट की--

चित्र में आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यह एक डी_जे सिस्टम जैसा प्रतीत हो रहा है।

में टावर जैसा है और बाहर की ओर बहोत सारे झाड़ दिख रहे हैं।

चित्र में आपको नजर आ रहा होगा यह एक तालाब जैसा है।

और उस तरफ कुछ लोग छोटे छोटे से नजर आ रहे है बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए।

घर के ऊपरी ओर में कुछ पतरे हैं जिसे पिलर से खड़े किए गए हैं।

यह स्टॉल का नाम है श्री राम भजिया वाला इसके ऊपर और कुछ लिखा हुआ है।

पीछे साइड की और दूसरा भी बोर्ड है दुकान का कार ए_सी --

कुछ लोग आगे की ओर खड़े हुए हैं जो फोटो खिंचवा रहे हैं जिनके मुंह ब्लर कर दिए गए हैं।

इस चित्र में आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यह एक घर जैसा है उसके ऊपरी भाग का हिस्सा दिख रहा है।

वहां गेट पे एक अह बोर्ड लगा है जिसका नाम कृष्णा नजर आ रहा है कुछ --

इस तस्वीर में आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यहां बहोत सारी तस्वीरे नजर आ रही है।

इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि यह एक घर जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है जो लकड़े का बनाया हुआ है।

इसमें दोनों तरफ से सिड़ियाँ नजर आ रही है उतर चढ़ के लिए --

पीछे की ओर झाड़ भी दिख रहा है घास छोटे छोटे दिख रहे हैं।

इसमें टॉयलेट्स वाशबेसिंग और अलग अलग टाइप के शावर्स भी दिख रहे हैं जिनके अलग अलग कलर भी दिख रहे हैं।

और इसमें एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है दुकान के अंदर।

स्कैनर जैसा भी कुछ दिख रहा है जी पेय लिखा हुआ है हैंड सेनीटाइजर भी है बाहर की ओर कुछ कुर्सियां हैं।

इस चित्र में आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यह एक लड़के का पांव जैसा दिख रहा है जिसके पांव में चोट लगी हुई है।

इसमें आगे लिखा है क्विक सर्विस लॉन्ड्री और बाहर के ओर चेयर्स रखे है पानी का बॉटल रखा हुआ है।

यह चित्र में आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यह एक प्लेट जैसा नजर आ रहा है।

इस चित्र में आप देख सकते हो कि यह एक हाल जैसा प्रतीत हो रहा है।